दी गई पिक्चर मे हमे एक आ स्कूल कॉलेज या हॉस्पिटल आ नजर आ रहा है जोकि रेड कलर से पेंटेड है| इसके ठीक सामने हम देखे तो एक बाइक खड़ी हुई है और इसके ऊपर बोहत सारे पोस्टर भी लगे हुए है।

पिक्चर मे हमे एक बहुत ही खूबसूरत पार्क देखने को नजर आ रहा है| यहाँ पर बहुत सारी बेंच भी बनी हुई है लोगों के बैठने के लिए| राइट साइड मे देखे तो एक फुटपाथ भी बना हुआ है।